यहां पे आप देख सकते हो ये--

और यहां पे पानी की टंकी भी रखी हुई हैं।

देख रहे हो यहां पे ये दरवा--

गमलों में पेड़ लगे हुए हैं यहां पे--

और यहां पे ये जार लगा हुआ है।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

फायर द ब्रांड लिखा हुआ है इसने यहां पीले रंग के कपड़े पेहन रखे हैं और नीचे नीले रंग की चप्पल पेहन रखी है और यहां पर यह--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

और इसने ग्रे कलर की पैंट पहन रखी है।

कुल्ला ना शाखा लिखा हुआ है यहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हैं और औरते भी बैठी हैं और यहां पे ये --

देख सकते हो बाइक है यहां पे देव फास्ट लिखा हुआ है।

यहा पे आप देख सकते हो ये--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

यहां पे आप देख सकते हो ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है।